देखा न रोड ह मस्त दिखत हे अति थ मस्त दिखत हे जी ओ घर ह बहोत अच्छा दिखत हे देखा न अति स मस्त दिखत बादल भी अति सुंदर दिखत हे जी का बताव --